फोटो खींचा रहे हैं कुछ लोग बात कर रहे हैं रेड कलर का एक लड़का पहना हुआ है शर्ट पेड़ है बहुत सारा।

यह एक झूला है झूले में बहुत सारे आदमी लोग झूम रहे हैं सामने कुछ बच्चे लोग भी खेल रहे हैं।

तामने बहुत सारे खेत लगे हुए है हरा कलर में सब्रू लोक रहा है एक ताड़ का पेड़ है।

पीला कलर का स कपड़ा से सजाया गया है।

सामने ऊपर में बहुत सारे व्हाइट कलर का बोल जल रहे हैं पीला कलर का मकान है बहुत सारे खिड़की हैं।

नीचे ऑरेंज कलर का जिठाया गया है एक आदमी फोन चला रहा है खड़ा होकर।

बहुत सारे आदमी लोग खेल रहे हैं एक झंडा गाड़ा गया है।

एक आदमी रेड कलर का जर्सी पहीनले है एक आदमी हरा कलर का पहिनले है एक आदमी पीला कलर का पही--